और कुछ कूलर्स दिखाई दे रहे हैं।

एक स्टेच्यू नजर आ रही है।

और पहाड़ नजर आ रहे हैं।

बड़ी बड़ी पहाड़ियां नजर आ रही है। नीला आसमान नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ नजर आ रही है।

एक लाइट्स नजर आ रही है व्यू बहोत सुंदर नजर--

बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

कुछ झाड़ियां नजर आ रही है और नीला आसमान नजर आ रहा है।

लोटस फ्लावर नजर आ रहे हैं।

और यह सभी दिखने में बहोत आकर्षित लग रहे हैं।